गाड़िया एक रेड कलर की कार है एक वाइट कार है और एक ऑटो है जिसपे लोग बैठे हुए हैं।

ये दो लोग दिख रहे हैं सबसे बड़े वाले फ्लोर में।

एक फ्रीजर भी दिख रहा है।

जो कि लोगों को उपयोगी एवं खेती में उपयोगी आ रही हो।

इसमें गैरेज का नाम है राज--

जिसमें की शर्ट पैंट और ड्रेस के कपड़े मिलते होंगे।

एक लड़की दिखाई पड़ रही है जो कि कंप्यूटर यूज कर रही है।

जहां पे लोग घूमने आए है।

और थोड़ा बहुत डेकोरेशन है।